दीवार पर ए_सी लाइट और स्विच बॉक्स लगाया हुआ है।

लोग झाड़ू मार रहे दिख रहा है।

ऊपर बहोत सारा इलेक्ट्रिक वायर भी है।

सामने कोई आदमी का पाव भी नजर आ रहा है।

कुछ कार्टून भी नजर आ रहा है।

सामने लाल रंग का कपड़ा दिखाई दे रहा है।

पास में इलेक्ट्रिक पोल्स भी लगा हुआ हैं।

टॉयलेट के ऊपर फ्लैश भी दिखाई दे रहा है।

ये फोटो में मुझे बहोत सारा सामान दिखाई दे रहा है।